और बहोत सारे सामान टंगे हुए भी हैं।

और अंदर के तरफ मुझे एक सीढ़ी भी नजर आ रही है।

यहां पर मुझे एक बेड दिख रहा है।

और एक ग्रीन बोर्ड दिख रहा हैं।

यहां पर मुझे एक झरना दिख रहा है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा रूम दिख रहा है इस रूम की दीवार का रंग ऑफव्हाइट है।

और मुझे एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है जाने के लिए --

जो लाल कलर के टेबल के अगल बगल बैठे हुए हैं लाल कलर के चिअर में--

और मुझे एक चाय की टपरी दिख रही है गैस का सिलेंडर दिख रहा है।

नीचे की तरफ एक शटर दिख रहा है जो खुला हुआ है आधा और मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं।

और कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं जो चटाई के ऊपर योगा कर रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा सिटिंग एरिया दिख रहा है।

हां पर मुझे एक बहोत बड़ा सा वॉटर फाउंटेन दिख रहा है।

और मुझे हुडेन काउंटर और हुडेन के ड्रार दिख रहे हैं।